यह एक चूड़ी का दुकान है जहां बहुत सारे प्रकार कलर का चूड़ी है।

हैप्पीनेस का एक उल्लू है पैराशूट है और एक ताजमहल टाइप का है।

बाबा चूड़ी स्टोर जहां बहुत सारे चूड़ी मिलते हैं।

शिवम कह के यह दुकान का नाम है।

बहुत अच्छा पानी है पानी के बीच में बहुत सारे झाड़ियां है पीछे पेड़ है बहुत बड़े बड़े पीछे पेड़ का परछाई बना हुआ है।

रंग बिरंगा साड़ी पहना है। सब कोई सिंदूर लगाया हुआ है।

माउस है कम कीबोर्ड है।

अम वाशिंग वाश से हाथ वाश करने का नल बहुत सारे नल हैं रंग बिरंगे कलर हैं।

ग्रीन रेड और भी बहुत सारे कलर के की शर्ट हैं और जींस भी है।

पोस्ट ऑफिस बैंक का लोगो लगा हुआ है और पीछे बहुत सारे पेड़ है रोड है।

दो लाइट है दो पंखा है एक सोफा लगा हुआ है दूल्हा दुल्हन बैठने के लिए।

बगल में तीन तल्ला घर है। फिर दो तल्ला घर है।

एक खिड़की है दो सोफा है एक डेस्क है।

उसे देने के लिए बहुत सारे टीचर बैठे--

बगल में एक बड़ा सा सादा मकान है और उसके पीछे भी एक सादा मकान है।